बहोत सारा सामान और बहोत सारे मजदूर काम कर रहे हैं।

एक टी_वी भी बड़ा सारा लगा हुआ है।

यह एक दुकान के बाहर की तस्वीर हैं एक बाइक काले रंग की खड़ी हुईं हैं।

तालाब से जा रहें हैं कुछ फोटो भी करवा रहें हैं तालाब के पीछे बहोत बड़े बड़े सुंदर पहाड़ बने हुएं हैं।

जिसका रंग लाल है और उसके ऊपर दुकान का नाम टेक हब और उसके बारे में सारी जानकारी दी गई हैं।

जहां पर ल बच्चों को मुंह बंदूक चलाने सिखाई जाती है।

और इसके ऊपर बहोत सुंदर डिजाइन किया गया है पीछे घर भी बने हैं।

यह एक बड़ा सारा हॉल है जहां पर लाल रंग के कारपेट बिछाए गए हैं।

जहां पर बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए है।

यह एक बड़ा सारा खेत है।

अलग-अलग तरह के लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं।

कप केक और बहुत सामान रखा हुआ है।

बहोत सारे लोग अ बेंचेस बैठे हैं।

यह एक ए_सी होल है जहां पर --

यह एक बड़ा सारा हॉल है जहां पर शादी की तैयारी की हुई हैं।

मेज कुर्सियां और बहोत ही साफ सफ़ाई भी है बहोत सुंदर लाइटिंग की गई है।

सफेद पीला संतरे चांदनी और गुलाबी--

बड़े बड़े लकड़ों के गट्ठे भी रखे गए हैं।

को रखने की जगह है जहां पर बड़े बड़े जालियां बनाई गई हैं।

यह ग्राउंड बहोत ही बड़ा है।